जो कि यह दरवाजे को अपने सर के ऊपर उठा रहे हैं।

इसके आस पास मुझे बहोत सारा छोटा छोटा घास दिख रहा है और आस पास मुझे बहुत से पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक मुझे यहां पर स्टैथौस्कोप और बॉटल भी दिख रही है और एक मुझे यहां पर फैन भी दिख रहा है।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

कुछ एक लड़के शैतान के अंदर ही खड़े हुए मुझे नजर आ रही है।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

जहाँ पर मुझे बहोत सारे लाइट्स दिख रहीं हैं।

यहाँ पर मुझे बहोत सारे पोस्टर्स भी दिख रहे है।

जहां पर मुझे बहोत सारे छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिख--

लकड़ी के डोर्स दिख रहे हैं यहां पर मुझे एक चप्पल दिख रही है।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

जहां पर मुझे बहुत सारे बड़े-बड़े घर देख रहे हैं।

बहोत सारे लोहे के कंटेनर दिख रहे--

बहोत सारी बाइक्स भीं यहाँ पर दिख रहीं हैं।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा एरिया दि--